--दिखाई दे रहा है जिसमे की ऊपर शट-- शरट शटर लगी हुई है अंदर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है काफी सारी बुकस दिख रही है अंदर ओर यह इस तरफ भी काफी सारे लोग बुकस खरीद ने के लिए खड़े है ऊपर तरफ शटर में किनारे फोन नंबर लिखा हुआ है।

किनारे तरफ कुछ मूर्तियाँ बनी हुए हैं जिनके पास ढोलक और तबले बने हुए हैं पीछे एक मछली की आकृति बनी है।

बड़ा सा दहलन दिखाई दे रहा है ऊपर तरफ वाइट कलर की सीलिंग और खंड बने हुए है पीछे तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है और एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ एक झाड़पीठ लगा हुआ है।

ये एक लड़का प्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है प्रेस की वायर नीले कलर की है दीवाल पीले कलर की है और एक रेक बना हुआ है जिसमें की कपड़े रखे हुए है और कुछ थैले रखे हुए है रेक के ऊपर एक घड़ी लगी हुई है।

कुछ लोग बेठे दिखाई दे रहें हैं जिन के सामने दो बड़ी टेबल रखी हुई है और टेबल पे कुछ पर्चे रखे हुए हैं और एक कॉपी रखी हुई है।